बना हुआ है इसमें बिल्डिंग बनी हुई है।

रास्ता दिख रही है। यहाँ पर बिल्डिंग भी बनी हुई है। गेट लगे हुए है।

होटल है उसमें विंडोस लगी हुई है है चैनल गेट लगा हुआ है।

बिल्डिंग दिख रही है इसपे वाइट कलर का पेंट हो रहा है विंडोस लगे हुए हैं हैं लाइट अअअ लगी हुई हे |

पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ रखी हुई हैं लाइटें लगी हुई हैं। म् --